एक छोटी बेटी की सामने फोटो लगी हुई है।

रखी गई है ताकि वो खराब ना हो उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं जिनके केवल पैर दिख रहे हैं।

यह एक इवेंट हॉल है जिसमें की कोई इवेंट होने वाला है।

बहुत बड़ा सा अह दूसरा एरिया आगे की ओर पड़ा हुआ है।

की एक काफी भव्य इमारत दिख रही है।